तस्वीर में मेरे को एक बॉय लिखा टोपा लगाया हुआ लड़का दिखाई दे रिहा है वे एक आ चार हाथ में जूते पेहने हुआ है।

इस तस्वीर में मेरे को एक बाइक दिखाई दे रही है दो टेम्पो दिखाई दे रहे है एक बस खड़ी दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्ल्यू है एंड सड़क पर खड़ी हुई है।